यहाँ पर बहोत माहौल मे आते है बहोत झन यहाँ मज़ा लेते है बहोत अच्छा भी लगता है। इसमें कभी बैठ के भी देखना बहोत --

ये जो आप देख रहे हैं पार्क यहाँ पर बहुत अच्छे से स्विमिंग पूला भी है और वहाँ से आते हैं यहाँ बहुत मजा भी आता होगा।

यह जो देख रहे है यहाँ पर ये जो अस्तपताल है बहुत अच्छे से यहाँ दवाई भी होता है और यहाँ बहुत सारे दो दो हा-अस्पताल है बहुत अच्छे यहाँ नर्स भी हैं ।

जिसका भी ब्लॉक होगा यहाँ पर आ जाना मैं भी आया था एक बार मेरा भी सिम ब्लॉक हो गया था बहुत--

और यहाँ देखते है अच्छे से यहाँ क्या अच्छे से इसको रखे है इस पर रिसर्च करते हुवे बहुत बढ़िया कर रहे है कभी करवा लेना --

बहोत सारे यहाँ पर खेती करे गए है और सरसो का खेती है और यहाँ पर फोटो ल फोटो भी बहोत अच्छा आता है यहाँ पर देख रहे है कि कितना अच्छा फोटो आय्या है खींचने से ही पता चल रहा है।